और बहोत बड़ा सा स्पीकर भी है ब्लैक कलर का।

बाहर में एक कर और ऑटो रिक्शा रखा हुआ है।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

इसमें बहोत सारे चेयर और टेबल भी रखे हुए है।

लाइट बल्ब भी टंगाया हुआ है।

और ये सभी इंसान लोग अपने अपने काम में बिजी है।

लैपटॉप को देख रहा है और एक मनुष्य है वह लोगों को देख रहा है।

इधर भी चेयर के ऊपर पिंक वाले टॉवल भी है।

वह लोग बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के है।

फोटो भी दिखाई दे रहा है एक इंसान खींचते हुए वो सेल्फी भी ले रहा है।

इस पिक्चर में बहोत सारे चीज़ रखें हैं वो चीज़ के अंदर है।

राखी बॉक्स में भी है और ऐसे टंगाया हुआ भी है।

सामने एक बिल्डिंग है ब्लू कलर और वाइट कलर की और मुझे मनुष्य भी दिखाई दे रहा है।

और खिड़की के कलर ऑरेंज है।

इधर कुल मिलाके पांच मूर्तियां है । मूर्तियां के पीछे अपने अपने एक एक घर है।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

और एक टेबल के ऊपर बहोत सारे दवा है और एक मनुष्य बैठके कुछ लिख रही है और--

इस तस्वीर मे भी दृश्य लोग चल रहे हैं और गाड़ी बाइक लोग भी चल रहे हैं।

आस्मां भी दिख रहा है दरवाजा का कलर ब्राउन है और खिड़कियाँ का कलर भी ब्राउन --

स्विच बॉक्स भी है स्विच बॉक्स के नीचे एक बैग है साइड बैग कलर के।

इस विदेशी के सामने एक और एक विदेशी है।

मुझे इस तस्वीर में बड़े से ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

एक अंकल दोनों चल रहे हैं और सामने में बहुत बड़ी बिल्डिंग है ब्लू कलर की।

वह बिल्डिंग पांच फ्लोर के है।

ऊपर में फैन भी है फिर दो फोटो भी लगा के है।

कार भी रखा हुआ है घर पर बाहर।

और लाल रंग का गेट में एक पोस्टर भी लगाया हुआ है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है और--

बिस्किट लोग भी है और कंटेनर के अंदर भी बिस्किट है।

यहां में मुझे एक मनुष्य ब्लू कलर के कुर्ते पहन के दिखाई दे रहा है।